सामने एक बरा सा कैलाश पर्वत दिख रहा है उसमे काफी सारे भगवान की मूर्ति बनी हुई हैं।

सामने एक बड़ा-सा अलमारी है बुक्स का जिसमे एक बड़ा-सा ट्यूबलाइट लगा हुआ है बल्ब लगा है फेन लगे है काफी सारे लोग आस-पास खड़े है पेन रखे हुए है पेन्सिल्स रखे है रबर्स रखे है।

एक गाड़ी है गाड़ी में कुछ पेंट कर रहे हैं एंड डीजल टैंक में ढक्कन लगा हुआ है।